यहाँ पर बहोत सारे खेत दिखाई दे रहा हैं हरा-हरा पूरा घास लगा हुआ है।

बहोत सारे रैके बनी है जिसमे बहुत सारे पेंसिल पेन रखे हुए हैं कुछ कार्टून जैसा दिखाई दे रहा है कलर --

और सामने की ओर पेड़-पौधे लगे हुए है हरे-हरे दिख रहे है।